यहां पार्क में एक बिल्डिंग है।

बहोत सारी कंपनियां भी हैं।

दुकान में बहोत सारे गीजर और पंखे के डब्बे रखे हैं।